यह एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है जो कि टीनो से बनी है।

पौधे भी हैं और बड़े है यहां पर लगे हैं।